यह कितने प्रिटी प्रिटी बुक्स हैं इसकी यार ओ माय गॉड ये लड़का कौन है आई फोन यार कितना ऑसम बंदा है यार---

आप देख रहे हैं मानसरोवर स्टेनर स्टेशनरी के नाम से ये फेमस हैयहाँ में यहाँ लटके हुए हैं आपके लिए मेरे लिए सबके लिए कॉमन नहीं हैं न जानते हैं ना ये कितना ऑसम लग रहा है ना |

ओह आप देख रहे है ये फोटो कितना अच्छा लग रहा है आपके लिए मेरे लिए कॉमन है सब के लिए नहीं हैं आप जानटे है ना-- ।